इस फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे होटल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे रहीं हैं।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

इस फोटो में मुझे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे ऊपर पुल दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे चाय का स्टॉल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है।